एक ट्रक खड़ा हुआ है।

इस दीवार पर लिखा है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो नः पठित--

यहां पर कितनी सारी ग्यारह कुर्सी रखी हुई है और एक मेज रखी हुई है।

यहाँ पर एक शीश लकड़ी का और शीशे का गेट लगा हुआ है जिसपर नम्बर वन एट सीक्स ज़ीरो टु सीक्स दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक खुला मैदान है।

मिसाइल लड़ी लगी हुई हैं।

एक बोर्ड पे येलो रेड ब्लू व्हाइट पेपर लगा हुआ है।

पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है और यहां पे कपड़े सूख रही हैं।

साइड में इसके खेत दिखाई दे रहे हैं।

फ्रिज के ऊपर एक स्टिंग पानी की बोतले रखी हुई है।

यहां पर अकबार भी दिखाई दे रहा है।

कितने सारे व्हाइट कट्टे हैं बड़ी बड़ी--

साइड में वाटर कूलर रखा हुआ है।

यहां पर नीले कलर की मशीन रखी हुई है और व्हाइट लाइट वाली भी है।

और एक लड़के ने ब्लैक कुर्ता पहना हुआ है।

एक आदमी ने पीछे खड़ा हुआ उसने ब्लैक कुर्ता पहना हुआ है उसकी जेब में पेन लगी हुई है।

बराबर में एक लड़का और खड़ा है जिसने व्हाइट बनियान पहन रखा है।

यहां पर पांच आदमी खड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं।

तीन चार साइकिलें खड़ी हुई है और एक वाइट कट्टा नीचे बिछा हुआ है।

खुला मैदान है यहां पर बहुत बड़ा और यहां पर दो बाईकें दिखाई दे रही हैं।

ऊपर नीचे कम रूम बने हुए हैं जिन रूम का गेट वोअ ब्राउंस कलर का दिखाई दे रहा है।